ये एक ऑफिस का बाहर है जहां बहुत बड़ा ऑफिस दिखाई दे रहा है।

यहां में लाल रंग का बहुत सारा किताब दिख रहा है जिसमें भगवान का फोटो भी लिखा हुआ है।

सफेद रंग का बॉटल भी दिखाई दे रहा है।

टेन बॉक्स भी दिखाई दे रहा है।

लाल वाला टोकरी में छेद छेद करके है।

बगल में बहोत सारा सामान दिख रहा है।

पानी भी दिखाई दे रहा है।

एक रेलवे स्टेशन है यहां हमें ट्रेन का रस्ता दिख रहा है एक कुर्सी भी दिख रहा है।

दीवार में वाइट रंग से कुछ लिखे हैं।

पिक्चर में बहुत सारा पेर है।

दीवार में भी कुछ लिखा हुआ है हिंदी से और नोटिस पर लिखा हुआ है उसमें कुछ लिखा हुआ है।

घर भी दिखाई दे रहा है नीचे में टाइल्स बिछा के भी देख रहा है।

पीछे में पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

आगे में सफेद रंग का सोफा दिख रहा है पीछे में बहुत सारे कुर्सी दिख रहा है।

नीचे में कार्पेट बिछा के है।

और तीन लोग भी दिखाई दे रहा है उसमें दो बच्चा है।

मट्टी भी दिखाई दे रहा है।

बाहर में बैठने के लिए बनाने वाला भी दिखाई दे रहा है।

वायर भी दिखाई दे रहा है लाइट पोस्ट भी दिखाई दे रहा है।

पीछे सभी बना के दिखाई दे रहा है उसमें उड़ने के लिए एक दिखाई दे रहा है।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

अलमारी भी दिखाई दे रहा है।

दूर में बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है।

ऊपर में बोज जैसा कुछ लगा के भी है।

घर का अंदर में पूरा सफेद रंग लगा के हैं और बहुत सारा फोटो फ्रेम भी दिख रहा है।

पीछे में बहुत सारा पेड़ भी दिख रहा है।

बहुत सारा नोटबुक भी दिखाई दे रहा है।

यहां में दो लोग दिखाई दे रहा है इसमें से एक लड़का है और एक लड़की।